अंदर एक खुर्सी दिखाई दे रही है और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हरी हरी घासे दिखाई दे रही है। पेड़ दिखाई दे रहै।

इस इमेज़ मे मुझे बहुत सारे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में मुझे बहुत सारे सब्जी के ठेले और सब्जी और फलों के ठेले लगे हुए दिखाई दे रहे है रोड पर आदमी दिखाई दे रहे आते-जाते और बहुत सारे आदमी फल सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे है एक दुकान दिखाई दे रही है बाजूमें मोटरसाइकल रखे हुए दिखाई है।

इस इमेज मे मुझे एक ग्राउड दिखाई दे रहा है ग्राउड मे एक अ फर्श सा रखा हुआ दिखाई दे रहा है डला--

और एक छत्ता सा लगा हुआ दिखा छत्ते से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुर्सियों के बाजू मे सामने एक घर दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज मे मुझे एक व्हाइट दीवार दिखाई दे रहा है और नीली नेट सी लगी हुई दिखाई देरी घोडा दिखाई दिखाई दे रहा घोड़े के सामने एक डलिया रखी हुई है।

इस इमेज मे मुझे एक सब्जी मंडी दिखाई दे रही है और उसकी ऊपर येल्लो पर्दे से लगे हुए है। आलू रखे हुए है प्याज रखी हुई है।